ये तो कोई अंग्रेजों के जमाने का कोई बिल्डिंग या कोई चर्च हो सकता है जो यूरोप के देशों मे ऐसे बिल्डिंग ज्यादा पाए जाते है।

ये कोई नदी है इसमें जिसमे दो लोग वाटर बाइक चला रहे है पीले रंग की वाटर बाइक है जिसमे आगे एक आदमी बैठ के चला रहा है और उसके पीछे खड़ा आदमी--

--और पीछे पंखा दिख रहा है सीलिंग में टंगा हुआ जो मैन गेट के अंदर जैसे लग रहा है कोई बरामदा जैसा एरिया होगा सामने खड़ा हो के लड़का अपनी फोटो खींच रहा है सीढ़ियों पर पत्थर लगे हुए है।

सामने एक कुर्सी भी रखी हुई है हो सकता है| यह फूलों का दुकान हो जिसको बेचते होंगे ये क्योंकि अलग-अलग फूल छोटे-छोटे पैकेटो मिट्टी लगा के रखे हुए है।

एक कमरे मे कुछ बच्चे पढ़ रहे है ऐसा लग रहा है किसी स्कूल का दृश्य है जिसमे बच्चे पीछे भी कुछ पढ़ रहे हैं | बरामदे मे कमरे नहीं होंगे तो।

चारों तरफ जिम करने वाली चीजें रखी हुई हैं। वेट लिफ्टिंग डम्बल और कई सारी चीजें रखी हुई हैं जिससे लोग कसरत करते हैं और अपने आपको स्वस्थ रखते हैं।

ए_टी_एम में कोई नहीं दिख रहा है। गार्ड भी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पैसे-वैसे नहीं निकाल रहा है अभी। ए_टी_एम बंद है।